मुझे इस तस्वीर में एक खराब गाड़ी दिखाई दे रही है।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

फूल के गमले भी है।

मुझे इस तस्वीर में एक कमरा दिखाई दे रही है।

गाड़ियां भी है इंसान भी है खिड़कियां भी है।

बहोत सारे कपड़े भी है।

मुझे इस तस्वीर में गाड़िया दिखाई दे रही हैं।

फेंसिंग भी दिख रहा है।

शीशे भी दिख रहा है।

फल भी बास्केट में रखा हुआ है।

दुकान के अंदर इंसान भी खड़े हैं।

पीछे भी दिख रहा है।